इस चित्र मे हमें दो हरी हरी बसे नजर आ रही है। आप देख सकते है। इस चित्र मे चार व्यक्ति है। लगता है ये व्यक्ति कही जा रहे है।

ये तस्वीर हमे एक स्कूल की नज़र आ रही है। आप देख सकते है इस प्रतियोगिता काफी बच्चो ने भाग लिया है।

जो व्यक्ति खड़ा है। उसके हाथ मे एक मशीन है। और दूसरा व्यक्ति लगता है। अपनी पीठ के दर्द को सही करवा रहा है।

ये तस्वीर यूनियन बैंक की है कुछ व्यक्ती और महिलाये यूनियन बैंक मे आयी हुई है हमे इस तस्वीर मे दो महिलाए और चार व्यक्ती नजर आ रहे है।

पानी भी कितना सुंदर लग रहा है। इस चित्र मे हमे काफी लोग नाव चलते हुए नज़र आ रहे है। सबसे आगे वाली नाव का कलर नीला--

ये तस्वीर एक डेरी की है। आप देख सकते है। इस तस्वीर मे हमे पाच से छे व्यक्ति नज़र आ रहे है। आप देख सकते है। की यहा पे कुछ मोटर सायकिले भी खड़ी हुई है।

ये तस्वीर हमे एक मूजियम की नज़र आ रही है। आप देख सकते है। इस तस--

सारे सदस्य हमें नज़र आ रहे हैं हमें यहां दो पुलिस वाले भी नज़र आ रहे हैं।